--है आगे की तरफ पाँच छह बड़े बड़े हरे रंग के झाड़ उगे दिख रहे है।

--और पार्क दिख रहा है जिसके अकरास में पीले रंग के फूल लगे नजर आ रहे है।

इस तस्वीर मे एक छत दिख रही है जिसके नीचे प्याज की बोरिया रखी दिख रही है गुलाबी रंग की है उसके अतराफ़--

यह गाड़ी की दुकान दिख रही है जिनमे बहोत सी गड़िया खड़ी है बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी मोटर साइकल है जिसके ऊपर अंग्रेजी मे होंडा लिखा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर में साफ़ आसमान दिख रहा हैं कुछ लाइटे दिख रही हैं कुछ लोग दिख रहे हैं कुछ घर दिख रहे हैं जिसके बाहर कुछ लाइटे लगी नज़र आ रही हैं।

तस्वीर मे नीला आसमान दिख रहा है झाड़ दिख रहे है और झील दिख रही है झील के आजु बाजु कुछ पानी के झूले दिख रहे है।

--गुलाबी और सफेद रंग की दिख रही है और एक बच्चा खड़ा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर में साफ आसमान दिख रहा है झील दिख रही है झाड़ दिख रहे है बड़े- बड़े पत्थर दिख रहे है झील के दायी तरफ दो लोग खड़े दिख रहे हैं।

--तस्वीर मे साफ आसमान दिख रहा है पहाड़ दिख रहे है पहाड़ पर हरे भड़े जाड़ उगे हुए दिख रहे है।

तस्वीर में साफ आसमान दिख रहा है बिजली के खंभे दिख रहे है जिस पर लाइटे लगी है पार्क दिख रहा है जिसमें कुछ बेन्चे पड़ी है जो खाली है और छोटे -छोटे झाड़ दिख रहे हैं।